यहां पर झील पानी दिख रही है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रही है।

यहां से कई सारे पेड़ पौधे और बादल भी दिख रही है यहां से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है।

ऐसा लग रहा है की दुकान खाली किया जा रहा है।

यहां पे चार पंखे भी दिख रहे हैं।

यहां से पहाड़ भी दिख रहे हैं।

गधे का कलर ब्राउनिश है।

यहां पे दो पंखे और बल्ब भी लगी हुई है।

पेड़ और टावर और पोल भी दिख रही है।

खाना बनाने वाला ताई भी रखा हुआ है।

यहां पे गौतम बुद्ध का फो लगा हुआ है।

यहां पे कुछ चेयर और टेबल भी दिख रहे हैं।

और यहां पे बोतलें भी दिख रही है।

इसका छत लाल कलर से सेट किया हुआ है।

यहां पर कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं।

कैफेटेरिया में कई सारे चेयर और टेबल भी हैं।

एक चेयर और गैस भी रखी हुई है।

पुल के नीचे पानी और रेत है नजारा बहुत खूबसूरत है।